चार पांच लोग बैठे हुएं हैं।

यह एक टूटी फूटी गाडी है।

इसमें बहुत सारी पेड़ पौधे लगे हुए हैं और एक मेन गेट लगा हुआ है।

यह एक शेमली पूल का दृश्य है जिसमें कुछ व्यक्ति तैर रहे हैं।

दो व्यक्ति बैठे हुए हैं इसकी छत की लाइट और पंख लगा हुआ है।

यह एक खेत के गेट लगा हुआ है इस गेट का कलर आसमानी है।